और यहां पे है सामने आटे की बोरियां हैं कुछ पैकेट्स रखे हैं माल के छत में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

ऊं तंबू जैसे बने हुए हैं आसपास पेड़ है पेड़ के ऊपर पेंट हो रखा है और रेलिंग लगी है लोहे की--

कपड़े हैं पिंक कलर का कपड़ा है व्हाइट कपड़ा है और यहां पे लोग ल कपड़े खरीदने आते हैं ये कपड़े की दुकान --

सामने एक शीशा बना हुआ है ब्राउन कलर का यहां पे फर्नीचर से--

यहां पे ऊं फैक्ट्री है फैक्ट्री में बहोत सारे वर्कर काम कर रहे हैं सामने एक बुलडोजर है।

ऊपर की जो रेलिंग है वो सफेद कलर की है ऊपर ब्राउन कलर का लोहे का बना हुआ है।